ये तो एक टूरिस्ट प्लेस है। यहां तो वेलकम टू --

बल्ब वेल्फ लिखा हुआ है एक लाल रंग का एक फूल भी--

पिजेन कुआ किया हुआ है वहा लाल रंग का दीवार भी दिख रहा है वहा तो दो इंट्रेंस डोर ज्यादा बड़िया है।

दिख रहा हैं और वहां एक शीशे भी दिख--

वाइट कलर का बोर्ड है यहाँ तो बाइक का सामान--

पेयर पार्ट सब कुछ मिलेगा यहां बाइक पे कुछ रिपेयर आए तो आपका तो सब कुछ पेयर पे--

कम्युनिके कम्युनिटी का दिख रहा है यहां तो अपार्टमेंटेस ही हैं सब कुछ ब्लू कलर का बिल्डिंग्स है ज्यादा बिल्डिंग्स हैं।

और यहां ग्लास की डोअर दिख रहा है और उस पे कुछ लिखा हुआ है।

हां तो कोका कोला नाम का बोर्ड लिखा हुआ है वो सब लाल रंग का है।

और वहां पा पिने का ग्लास भी--

हां तो ज्यादा लोग हैं यहां एक छत भी दिख रहा है।

और यहाँ दो दूकान भी दिख रहा है।

क्लाथ है और वहां टेबल पे प्लेट्स भी है। व्हाईट कलर प्लेट्स है और --

पौधा दिख रहा है और छोटा छोटा पौधा भी है।

ये तो क ये तो एक मुर्गा हैं।

पीपल का पेड़ ज्यादा पुरानी जैसी लग रहा है यहां दीवार भी है।

और ट्रेक्टस के लिया और बाईस का टेग्स भी मिलेगा यहाँ--

यह तो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है यहां तो तरह तरह की पाइप्स मिलता है।

ये तो एक फंक्शन हॉल का एंट्रेंस जैसी लग रहा हैं यहाँ तो ज्यादा बढ़िया लाइटिंग --

ये तो एक टाइल्स का दुकान है यहां तो तरह तरह की--

ज्यादा सामान है यहाँ तो दीवार का दीवार के उपर--

परबत के ऊपर जैसी लग रहा है ऐसा--

ये आदमी लाल कलर शर्ट पहना हुआ है और काला रंग का पैंट पहना हुआ है।

बिल्डिंग का अंदर भी का लोग दिख रहा है वहां तो--

आ नारियल का पेड़ भी दिख रहा है। वहां तो--